यहाँ पर हमे एक रास्ता दिखाई दे रहा है| जिस पर बहोत सारे लोग हैं| कुछ ठेले लगे हुए है| फल फ्रूट के और जे एप्पल अंगुर वगेरा के और यहाँ पर कुछ मकान है।

यहां पर एक व्हाइट कलर का रूम है। जिसमें कुछ लोग खड़े हुए हैं। जिसमें एक माईक रखा हुआ है।

यहां पर एक नदी है और इसमें एक सफ़ेद कलर कि नाव है जिसमे विंडो लगी हुई है गेट लगे हुए हैं।

ऊपर एक पिंक कलर के और वाइट कलर की बिल्डिंग है जिसमें बहुत सारे विंडो लगी--

कुछ हरे पेड़ है बड़े-बड़े और एक अंकल है जोकि रेड कलर की टी-शर्ट और ब्लैक कलर का पेंट पहन रहे हैं।